कुछ लोग सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे--

जो की यहां पर हमें दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की --

दीवारों पर कुछ ब्लैक कलर भी हमें नजर आ रहा है और सो--

साथ में ही यहां पर हमें बिल्डिंग में खिड़कियां लगी हुई दिख री है जी_एस_के बैंक व्हाइट कलर बोर्ड --

पीछे कुछ हमें झूमर दिख रही है।

कुछ व्हाइट कलर की यहां पर हमें--

पीछे की ओर हमें दिख रही है कुछ पेड़ लगे हुए हैं ग्रीन कलर के साथ में ही आसमान का कलर यहां हमें--

यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति ब्लैक स्वेटर में दिखाई दे रहा है।

जिसमें की बोहोत सारी खिड़कियां लगी हुई नजर आ रही है।

जो की ग्रोसरी की शॉप है।

बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का सामान दिख रहा है।

यहां पर हमे कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने वाइट कलर के कपड़ों में लोग हैं।

लग रही हैं सामने ही पीछे वाइट कलर की हमे दीवारे दिखाई दे रही हैं और कुछ--

यहां पर बहुत सारे लोग दिख रहे है।